और भी अन्य समान दिख रहा है पिलर दिख रहै है पाइप दिखाई दे रहै है।

कांच भी दिखाई दे रहे है गेट भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में जिम में उपयोग होने वाला समान दिखाई दे रहा है फ़ीट प्रो लिखा दिख रहा हैं।

चित्र में एक लड़के की हेयर कटिंग होती हुई दिखाई दे रही है एक लड़की बैठी हुई हैं ।

खड़े है एक के पास फ़ोन है बिजली के बोर्ड कांच में दिखाई दे रहे है स्प्रे बोतल भी दिखाई दे रही है।

चित्र में वाटर पार्क की चार स्लाइडे दिखाई गयी है खूब सारा पानी एक बॉल --

चित्र में बड़ा सा पांचाली लिखा हुआ दिख रहा है डैमी के ऊपर साड़ी सूट लगे हुए दिखाई दे रहै है।

इस चित्र में एक वाइट कलर के बोर्ड पे विश्वा रक्त दाता चौदह जून लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

तुम्हें ट्रेडमिल्स दिखाई गई है बड़ा-सा काँच दिखाया गया है ।

चेयर रखी हुई है फिश टैंक दिखाई दे रहा है बड़ा -सा काँच का गेट दिखाई दे रहा हैं ।

लोहे की रेलिंग दिखाई दे रही है पेड़ और आसमान भी दिखाई दे रहा है एम जे एम एकेडमी लिखा है।

ब्लॉक्स का रोड जाता हुआ दिख रहा है लाइट जली हुई दिख रही है नाईट लैंप दिख रहे हैं।

बैठने की चेयर दिखाई दे रही है घास और बड़े-बड़े पेड़ दिखाई --

चित्र में एक सब्जी की दुकान दिखाई गयी है जिसमें कई सारी सब्जिया है चुकुन्दर गाजर लोकी भट्टे--

जो मे स्टेज पर एक शादी होती हुई दिखाई दे रही है बहोत सारे लोग खड़े है कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहै है।

चित्र में एक बस दिखाई दे रही है जिसपे मनीष लिखा है एक उसपे माला टंगी हुई है।

दो लोग बैठे दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है लोहे की झालिया भी दिखाई दे रही है।

रास्ता जाता दिखाई दे रहा है एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है ।

त्रि में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ।